लगे हुए है पत्थर लगे हुए ऊपर से पानी गिर रहे है साइड में घास वगैरह है पेड़ वगैरह लगे हुए है और ये फोटो ब्लर - ब्लर सा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है झरना।

उसके अंदर ऑरेंज कलर की आउट लाइन है और एक बहुत बड़ा उसके साइड में एक पेड़ लगा हुआ है जो की बहुत घना है उसके जो है मंदिर एक ऊपर बना रहे है और वाइड लाइट के वायर भी दिख रहे हैं।

यहां पर आपको तरह-तरह की टी-शर्ट्स जैकेट्स डेनिम-जैकेट्स पैंट वगैरा लोवर वगैरा शर्टस वगैरा टी-शर्ट वगैरा सब अवैलेबल है मनचाहत फैशन हाउस ।

ये एक छोटा सा झरना है जहाँ पे पानी नीचे आ रहा है और पानी नीचे आ के गिर रहा है और यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं जो की जस्ट उसके उपर है और यहाँ पे काई जी वगैरा भी है।

गार्मेंट्स मिल जाएंगे आपको गार्मेंट्स की शॉप भी है रेडी ड्रेसेज भी मिल जाएगी और उसके ऊपर एक होटल वगैरा बना हुआ है रेस्टोरेंट ।

ओर ये खेती वाला खेती होती है। और वहाँ पे घांस भी उग रही हैं और एक ये खेत है।

ये एक थिएटर है जिसका नाम किसान है यहाँ पर एक मूवी लगी है जिसका नाम कस्मिर फाइल है।